यहां पे दो लोग दिखाई दे रहे हैं पीछे में बहुत सारा पानी है दूर में बड़े बड़े पहाड़ हैं।

उसके बगल में एक बुलेट खड़ा है बुलेट के बगल में एक लड़की भी ख--